सबको लाइट से सजाया गया है।

सामने एक बिल्डिंग है जिसकी छत--

जूस का ठेला लगाया हुआ है दो आदमी खड़े हैं साइकल के पास।

एक आदमी सीधे जा रहा--

और बगल अगल में पेर पौधे हैं एक आदमी बस में चढ़ रहा है।